इस फोटो पे मुझे बहुत सारे ऑटो के स्टैंड दिखाई दे रहा है साथ में यहां पर बहुत सारे--

चारों ओर कैमरे लगे हुए हैं और साथ में यहां पास बहोत सारी तार की गई है।

चारों ओर बहोत सारे कैमरे लगाए गए हैं और यहां पर रेलवे स्टेशन का नाम लिखा गया है।

लोग खड़े हुए हैं प्लेटफार्म में अ यहां पास बहोत सारी कुर्सी रखी हुई है।

और यहाँ पर बहोत सारे लोग खड़े हुए है और यहाँ पर बहोत सारे --

इस फोटो में मुझे बैंक दिखाई दे रहा है जहां पास बहुत से लोग खड़े हुए हैं।

यहाँ बिल्डिंग भी बोहोत बड़ी बिल्डिंग है साथ में आस पास बहोत सारे घर भी है और यहाँ लाइटें बोहोत सारी लगाई गई हैं बिल्डिंग में।

और यहां पास कुछ घर भी बने हुए हैं और यहां कुछ लोग खड़े हुए हैं।

ऊपर के तरफ में बहुत सारे बल्ब और एक ए_सी लगाया गया है।

आग न हो जायें इसलिए यहां फसल काट रखा हुआ है साथ मे आपस कै--